एक हाथ को अपने कान के सामने एक हाथ को माइक के अपने आगे से लगाई है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है काले-काले लम्बे-लम्बे बाल है इसके गले में कुछ पहने हुई है।

हरा मैदान है खली मैदान है एकदम हरा-भरा है पीछे बिल्डिंगे भी बनाई गई है इधर तारे भी खींची गई है पेड़-पौधे भी है छोटे-छोटे भी पेड़ पौधे है बड़े-बड़े भी है पेड़-पौधे है।

नीचे लाइटे भी जल रही हैं यहां पे काफी मंदिर प्रतीत हो रहा है कही-कही एक दो टेज पेड़ भी नज़र आ रहे हैं इसमे काफी हरे-भरे हैं।

देख सकते हैं गेट भी बहोत बड़ा है | बहोत ही शानदार लग रहा है चमक और कितनी लाइटिंग इसमें व्यवस्था बहोत ही बढ़ियां दी गई है |

यहाँ दो बच्चे हैं नृत्य मुद्रा में बैठे है जूता पहने है लोअर पहने है टी-शर्ट पहने है दोनों बच्चे और नीचे काफी भी फर्श इनका चमक रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है।

पीछे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिनको इन बिल्डिंगो को काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे है इमारतें हैं इसके जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इसके खिड़कियाँ भी बहुत ही बढ़िया बनाई गई हैबहुत ही सुंदर बनाई गई है जिसमें इनके या वो बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया गया है डिजाइन बना के --

यहां लाइटिंग भी लगाई गई है जो की बहुत अच्छा लग रहा है ये पंखा हम देख सकते है कितना शानदार से चल रहा है पंखा नीचे फर्श भी काफी अच्छी है।

लकड़ियों से बांधा गया है इसको जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है सफेद कलर का कुर्ता पहन के बूढ़ा आदमी उसपे बहुत ही ध्यान लगा के --

इसके पीछे की बिल्डिंग सफ़ेद कलर से पेंट की गई है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं एक आदमी है एक लड़का है एक औरत है एक छोटा सा बच्चा है।